मिट्टी में भी छोटी छोटी घास उगाई है ये बहुत अच्छा दृश्य है।

इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति उसकी फोटो लेते हुए नजर आ रहा है।

फैंसी फैंसी तरीके की जूता चप्पलो की ये शोरूम बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

एक लोग माइक पे सभा को संबोधित कर रहे हैं।